जोकि योगा एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर --

में कई प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक की गई है।

पूर्ण धरती हरियाली-हरियाली दिखाई दे रही है जो कि घास बहुत बड़ा है।

यहाँ एक स्टेज है और सभी लेडिजे यहाँ बैठी है।

यहाँ पर कई प्रकार के मेडिसिन्स मिलते है और --

के बारे में कोई भी कंप्लेने और जानकारी यहां से ले सकते हैं।